यहाँ एक फूड फास्ट की स्टॉल है जहाँ पर दुकानें है फूड फास्ट की एक स्टॉल में पानी की बोतल है दूसरे में फूड फास्ट है।

यहां पर एक स्टैंड फैन भी लगा हुआ है।

यहां पे कुछ चेयर्स टेबल लगे हुए हैं।

यह गांव का एरिया लग रहा है यहां पे बड़े बड़े वायर्स गए हैं उपर मैं पेड़ पौधा है बगल में एक नदी भी है।

अं हीरो कंपनी का है नि पोस्टर लगा हुआ है जिसमें की लिखा हुआ है बुलंदी की नई पहचान--

घर का ही ओपनिंग है यहां पे पेड़ लगे हुए हैं और पेड़ को--

हां एक गाड़ी दिखाई दे रही है स्कूटी वहां स्कूटी में एक आदमी भी खड़ा है।